इस फोटो में एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है और एक पत्थर है जिस पे लिखा है खतरा--

दिन का समय है लड़की ने पिंक टॉप पेहना है।

एक कैमरा नजर आ रहा है लड़कों के फेस हाइड किए हुए हैं कुछ डिब्बे नजर आ रहे हैं दीवार व्हाइट कलर की है और जमीन जो है--

और बाहर कुछ मिट्टी नजर आ रही है छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

एक दुकान का फोटो नजर आ रहा है यहां पर हमें कोलगेट ब्रश नजर आ रहे हैं पैंपर्स--

सामने एक तिरंगा नजर आ रहा है ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर का बीच में हरे अह ग्रीन अह ब्लू कलर से चरखा बना हुआ है।

काफी बड़ी बड़ी तारे नजर आ रही हैं बिजली की--

बैग पड़ा हुआ है पर्दे लगे हुए हैं और येलो कलर की दीवार नजर आ रही है।

और पीछे एक सुखेगा कूड़े वाली गाड़ी नजर आ रही है जो कूड़ा लेने आती है गाड़ी वो और एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है।

पीछे देख कर लग रहा है कि दिन का समय है।

जो है दो लड़के खड़े हुए हैं।

और एक लेडी बैठी हुई है जिसके हाथ में किताब है।

और यहां पर एक लोटा भी रखा हुआ है।

और दीवार जो है वो पिंक कलर के नजर आ रही है और जो ऊपर की फ्लोर है वह वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

और यहां पर जो जो सरफेस है वो ब्लैक कलर का है ऊपर भी ब्लैक है कुछ लैंप से लगे हुए हैं लाइटे लगी हु--

ये है कोई कॉलेज है एम_आर कॉलेज और यहां पर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं जो येलो कलर के कपड़ों में है।

यहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं मेन्सवेयर के।

कुछ बच्चे आगे खड़े हुए हैं और खेल रहे हैं।